कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

एक आइसक्रीम की फ्रिज रखी है।

शेर दिख रहा है।

इस चित्र में एक होटल रूम दिख रहा है।

इस चित्र में मेला दिख रहा है।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

जिसका नाम अटल बिहारी स्कूल है।

इस चित्र में जनरेटर दिखाई दे रहे हैं।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

पानी में बारिश हो रही है।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

पीली डलिया रखी है कच्चे केले दिख रहे हैं।